इस फोटो में बताया है कि यहां पे एक यहां पे एक मंदिर है मंदिर--

और लाइट लगी हुई है रूम में चेयर रखी हुई है। यहां पे एक अखबार रखी हुई है कई सारी।

ये फोटो है इसमें बताया है कि यहां पे हमें--

यहां पे सेलोन है और उसने अपने हेयर कटिंग करवाए हुए हैं।

पुल है पुल के नीचे कुछ लोग दिखाई दे रहे--

टैंकी पड़ी हुई है और कई सारी हरियाली दिखाई दे रही--